जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक बहुत बड़ा रूम है रूम देखने में काफी समकदार अच्छा लग रहा है सफ़ेद रंग --

रंग से और ये बहोत साफ सुथरा दिख रहा है दिखने में बहोत ही अच्छा लग रहा--

इसे फूल से सजाया गया है फूल का जो रंग है वो लाल और सादा--

वो डिजाइनदार है दिखने में काफी अच्छी लग रही है पीली रंग की है।

काफी बड़ा है पहाड़ भी है ऊंचा भी है और नीचे जमीन भी है मिट्टी--

और यहाँ पर एरोप्लेन दिख रहा हैं जो साधा रंग का हैं --

दिखने में ये कपडे़ हैं और कपडे़ जो हैं रंग बिरंगे हैं देखने में अच्छे लग --

देखियां हैं इसमें बहुत सारी जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए हैं मंदिर के ऊपर में भोलेनाथ का एक मूर्ति है --

औ ऊपर में एक पेड़ भी है जो पेड़ जो काफी ऊंचा दिख रहा है उसके बगल में एक पहाड़ है पहाड़ में बहुत सारे --

नमें ब्‍लू रंग की है और यहां पर शीशे से इसे बनाया गया है इसका दरवाजा जो है शीशा से है यहां पर एक आदमी यहां खड़ा है ।

और वो बी देखने में अच्छे लग रहे हैं बगल में एक शीशा हैं शीशा --

यहां पर उसके बगल में मैथा मेटिक्‍स क्‍लास का एक क ट्यूशन है यहां पर एक आदमी बैठा हुआ चेयर के पास और अ--

अगल बगल में पेड़ हैं जो दिखने में काफी बड़ा हैं और अच्छा लग--

लगे है देखने में उससे हरियाली लग रही है बगल बीच में एक क यहां पे दुकान है दुकान में एक आदमी बैठा है और उसके पास चाय ।

जिसमें लाइट भी लगाई गई है देखने में अच्छी लग रही है अंदर में फूलों से सजाय गया है फूल का जो --